जैसे कि हम देख पा रहे हैं। हमें एक दिन का समय लग रहा है। सामने एक घर जैसा कुछ दिख रहा है।

ये सामने एक बोर्ड लगा हुआ है उसमें अलग तरह के अक्षरों से कुछ लिखा हुआ है और सामने हमें दो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग भी दिख रही है।

सामने हमें एक बेंच दिख रही है उसपे एक आदमी बैठा हुआ है उसने ब्लू टी शर्ट पहनी है।